और बीच में नेट लगा हुआ हैं।

पीछे बहुत ज्यादा पहाड़ दिखाई दे रहे।

सामने एक कप चाय रखा है।

एक उम् उसमें ये चिनी के पाउच रखे हुए दि--

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे र--

कुछ पेन रखे है गिलू रखी है एक किताब खुली रखी है।

रेल का लोहा जंग लगा हुआ है।

एक राउंड टेबल दिखाई दे रही है।

और इसमें शीशे लगे हुए है।